सड़क है जोकि बहुत सुंदर सड़क है लेकिन बहुत कचरा है सड़क पे और इसकी साफ-सफई करने वाला कोई नही है खाली आ रहा है आदमी जा रहा है सड़क पे और अगल-बगल पूरे उम एथी है पेड़-पौधे हैं और बगल में कचरा का है सब।

और झंडा लगाया गया है | अच्छा लग रहा है बाइक भी है |

ये बहुत बड़ा एथी है फील्ड है और अच्छा लग रहा है देखने में बहुत खुबसुरत है और बहुत पूरा एथी दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बहुत प्यारा है सब कुछ यहाँ पे बहुत।

अच्छा लग रहा है देखने में।